ये बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा यहां पर कार्य का निर्माण किया जाता है।

यह फेक्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी होती है

ये एक खेत है बहुत बड़ा खेत है।